और ये किसी पार्टी में खड़ा हुआ है।

जिम का कोई फिटनेस वो भी लगा हुआ है।

से एक ग्लास भी रखा हुआ हैं इन्होने।

ये मंदिर जो है बहोत ही मनमोहक है और --

बाहर एक रिसीवर रखा हुआ है और उसकी पट्टियाँ जो हैं लाल पुती हुई है।

कुछ खंडर जैसा भी लग रहा है यानी पुराना प्लेस खंडर जैसा ही --

और बहोत ही देखने में सुन्दर दृश्य लग रहा है। नीले आसमान के तले --

जैसे कि किसी रेलवे क्रॉसिंग की या --

यहाँ पर कुछ शील्डस भी रखी हुई हैं जिससे ये लगता है कि कोई प्लेग्राउंड भी --

और यहाँ पर सी.एन.जी कही दिख नहीं रही है यानी की ये डीज़ल और पेट्रोल का ही पंप है।

यहाँ पर इसलिए मकान सजाया गया हो यह दृश्य --